ये एक बिल वो घर सा है।

और ये गार्डन सा लग रहा है बिल्कुल सामने।

और साइड में अलमारी है एक।

ओ साइड में एक तस्वीर है और नीचे फर्श हो रहा है।

अंदर टैटू टैटू_टूटू से बन रहे हो।

बहुत सारे लड़के हैं जो उसी में कुछ लिखाये हुए पढ़ रहे हैं।

और साइड में भी दो दुकान साइड में है एक इधर है एक इधर है।

और ऊपर बहुत सारी बैलून लग रहे हैं।

और बहुत सारे झंडे वंडे लग रहे हैं हमें।

इसमें सीमेंट के गट्टे मिलते हैं और ये जो से पास में दो दुकान है इसमें अगले वाले में दवाई मिलती है।

ऊपर टीन गिर रखी है इसमें नील ब्लू कलर हो रहा है और टीन पर भी।

रूफ में कैमरा भी लग रहा है और--

ऊपर फैन लग रहे हैं और लाइट लग रही है और डेस्क --

और बाहर जाने का कुछ सिस्टम है इसमें वेलकम लिख रहे --

और एक चेयर रखी हैं।